लिबरऑफिस मैथ पर स्पोकेन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि कैसे डेरिवेटिव्स और डिफरेंशियल इक्वेशंस लिखें इंटीग्रल इक्वेशंस और लॉगरिदम्स के साथ फॉर्मूले कैसे लिखें
इसके लिए चलिए सबसे पहले उदाहरण राईटर डॉकुमेंट जिसको हमने पिछले ट्यूटोरियल में बनाया था mathexample1ओडीटी
यहाँ चलिए डॉक्युमेंट के अंतिम पेज तक स्क्रोल करते हैं और एक नये पेज पर जाने के लिए कंट्रोल Enter दबाइए
अब लिखिए डेरिवेटिव्स एंड डिफरेंशियल Equations और Enter बटन दो बार प्रेस करें
अब चलिए मैथ ओपन करते हैं इंसर्ट मेन्यू पर क्लिक करें फिर ऑब्जेक्ट और फिर फॉर्मुला
इससे पहले कि हम आगे जाएँ चलिए फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाकर 18 पॉइंट कर देते हैं
अलाइनमेंट को लेफ्ट लेफ्ट में बदल दीजिये
चलिए बेहतर पठनीयता के लिए अपने प्रत्येक उदाहरणों के बीच नई लाइन्स और खाली लाइन्स जोड़ देते हैं
चलिए अब सीखते हैं कि कैसे डेरिवेटिव्स डेरिवेटिव और डिफरेंशियल इक्वेशंस डिफरेन्शल इक्वेशनलिखें
मैथ इन फोर्मुले और इक्वेशंस को लिखने का बहुत ही सरल तरीका प्रदान करता है
हमें बस इन्हें फ्रैक्शन फ्रैक्शन की तरह संसाधित करना है और मार्क अप ओवर इस्तेमाल करिये
उदाहरणस्वरुप पूर्ण डेरिवेटिव डीएफ बाय डीएक्स लिखने के लिए फॉर्मुला एडिटर विंडो में मार्क अप होगा डीएफ ओवर डीएक्स
अगला पार्शियल डेरिवेटिव के लिए हम पार्शियल शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं
और मार्क अप इस प्रकार दिखेगा del फ़ ओवर del एक्स
हमें कर्ली कोष्ठकों का इस्तेमाल करना होगा जब हम मार्क यूपी पार्शियल इस्तेमाल करेंगे
राइटर ग्रे बॉक्स में पार्शियल डेरिवेटिव्स के लिए del चिन्ह पर ध्यान दें
यहाँ एक अन्य उदाहरण है न्यूटन का दूसरा गति नियम न्यूटन्स सेकंड लाव ओएफ मोशन
जोकि त्वरण और बल के बीच के सम्बन्ध का वर्णन करता है
फ़ इक्वलटू एम आ
इसको एक साधारण डिफ्फ्रेंशियल इक्वेशन की तरह लिख सकते हैं फ़ ओएफ ट इक्वलटू एम गुणा डी स्क्वेर्ड एक्स ओवर डिट स्क्वेर्ड
ध्यान दीजिये कार्य के क्रम को कहने के लिए हमने कई कर्ली कोष्ठकों का इस्तेमाल किया है
और इक्वेशन जैसी स्क्रीन पर है वैसे दिखेगी
यहाँ डिफ्फ्रेंशियल इक्वेशन का एक और उदाहरण है
न्यूटन लॉ ऑफ कुलिंग
यदि थीटा ऑफ़ ट एक वस्तु का समय ट पर तापमान है तब हम एक डिफ्फ्रेंशियल इक्वेशन लिख सकते हैं डी ऑफ़ थीटा ओवर डी ऑफ़ ट इक्वलटू माईनस क गुणा थीटा माईनस एस
जहाँ एस आस पास के वातावरण का तापमान है
रायटर ग्रे बॉक्स में इक्वेशन पर ध्यान दें
चलिए अपना काम अब सेव करते हैं
फाइल पर जाए और सेव पर क्लिक करें
चलिए अब देखते हैं कि कैसे इंटीग्रल इक्वेशंस लिखें
और चलिए रायटर ग्रे बॉक्स के बाहर तीन बार क्लिक करके नये पेज पर चलते हैं
और फिर कंट्रोल Enter दबाइए
लिखिए इंटीग्रल Equations और enter दो बार दबाइए
अब चलिए इंसर्ट ऑब्जेक्ट मेनू से मैथ को ओपन करते हैं
फोंट साइज़ को बढ़ाके 18 पॉइंट तक करें
और अलाइनमेंट को लेफ्ट में बदल दें
इंटीग्रल चिन्ह लिखने के लिए हमें केवल फॉर्मुला एडिटर विंडो में मार्कअप इंट इस्तेमाल करना होगा
अतः एक रियल वेरिएबल एक्स का एक फंक्शन फ़ और x एक्सिस पर रियल लाइन में इंटरवल आ ब
सीमांकित इंटीग्रल इस तरह से लिखा जा सकता है इंटीग्रल फ्रॉम आ टो ब फ़ ओएफ एक्स डीएक्स
इंटीग्रल चिन्ह को दर्शाने के लिए हमने मार्कअप इंट का इस्तेमाल किया है
लिमिट्स आ और ब दर्शाने के लिए हमने मार्कअप फ्रॉम और टो इस्तेमाल किया है
रायटर ग्रे बॉक्स में फॉर्मूले पर ध्यान दें
अगला एक उदाहरण दोहरा इंटीग्रल फोर्मुला आयतफलकी का घनफल यानि क्युबोइड का वोल्यूम हल करने के लिए लिखते हैं
फॉर्मूले स्क्रीन पर दर्शाया गया है
जैसा कि हम देख सकते हैं दोहरे इंटीग्रल के लिए मार्क अप है आई आई एन ट
उसी प्रकार से हम आयतफलकी का घनफल हल करने के लिए तिहरा इंटीग्रल इस्तेमाल कर सकते हैं
और तिहरे इंटीग्रल के लिए मार्क अप होगा आई आई आई एन ट
हम एक इंटीग्रल की लिमिट्स देने के लिए सबस्क्रिप्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं
सबस्क्रिप्ट का इस्तेमाल करके मैथ चिन्ह को इंटीग्रल के निचले दायें ओर रख देता है
अतः इन तरीकों से मैथ में इंटीग्रल फॉर्मूले और इक्वेशंस लिख सकते हैं
चलिए अब देखते हैं कि कैसे लॉगरिथम्स सहित फॉर्मूले लिखें
चलिए यह एक नये मैथ ग्रे बॉक्स या मैथ ऑब्जेक्ट में लिखें
लिखिए Logarithms और दो बार Enter प्रेस करें
मैथ को फिर से लाएं160 और फोंट को 18 पॉइंट तक बदल दें
और उनको लेफ्ट में अलाइन करें
एक सरल फॉर्मूले लोगारिथम का इस्तेमाल करते हुए है लॉग 1000 टो थे बसे 10 इक्वलटू 3
यहाँ मार्क अप पर ध्यान दें
यहाँ एक अन्य उदाहरण है लॉग 64 टो थे बसे 2 इक्वलटू 6
चलिए अब नैचुरल लोगारिथम का इंटीग्रल वर्णन देखते हैं
नैचुरल लोगारिथम ऑफ़ ट इक्वलटू इंटीग्रल ओएफ 1 बाय एक्स डीएक्स फ्रॉम 1 टो ट
और मार्कअप जैसे स्क्रीन पर है वैसे दिखेगा
चलिए अपने उदाहरण सेव करते हैं
यहाँ आपके लिए एक कार्य है निम्लिखित डेरिवेटिव फोर्मुला लिखिए डी स्क्वेयर्ड य बाय डी एक्स स्क्वेयर्ड इक्वलटू टो डी बाय डीएक्स ओएफ आरोह्य कोष्ठकों का इस्तेमाल करिये
निम्लिखित इंटीग्रल लिखिए इंटीग्रल विथ लिमिट्स 0 टो 1 ओएफ square रूट ओएफ एक्स डीएक्स
अगला डबल इंटीग्रल दोहरा इंटीग्रल निम्न प्रकार से लिखिए डबल इंटीग्रल फ्रॉम ट ओएफ 2 सिन एक्स - 3 य क्यूब्ड 5 डीएक्स डाय और फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हुए लॉग एक्स टो थे पॉवर ओएफ प टो थे बसे ब इक्वलटू प इंटो लॉग एक्स टो थे बसे ब लॉग 1024 टो थे बसे 2 को हल करिये
अपने फॉर्मूले को फॉर्मेट करिये
इसी के साथ हम लिबरऑफिस मैथ में डिफ्फ्रेंशियल और इंटीग्रल इक्वेशंस और लॉगरिदम पर ट्युटोरियल के अंत में आ गये हैं
संक्षेप में हमने सीखा कि कैसे डेरिवेटिव्स और डिफ्फ्रेंशियल इक्वेशंस लिखें
इंटीग्रल इक्वेशंस और लॉगरिदम के साथ फॉर्मूले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
यह प्रोजेक्ट httpspoken tutorialorg द्वारा संचालित है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
हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद